मशीन भी दिखाई दे रही हैऔर यहाँ काउंटर पर बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है जो की डिब्बो में रखा हुआ है।

जुलूस टाइप निकल रहा है जो की लोग यहाँ बाउंड्री के अन्दर होकर देख रहे है।

जैसा की हमे यह दिखाई दे रहा है की यह एक बेडरूम है और इस बेडरूम के अंदर हमें --

स्टेज को बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाया हुआ है।

फ्री हो रही है जैसे की हमे यहाँ दिख रहा है डमरू --

पूजा करवा रहे है और हमे ये नजर आ रहे हैं और यहाँ बहोत --